और ढेर सारे लोग खड़े हुए है छतरी ले कर के कुछ गुलाबी और एक सफ़ेद पीछे पेड़ दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे --

ये एक बिल्डिंग है बनी हुई है जो लाल और सफ़ेद कलर की है सामने एक चबूतरा बना हुआ है उसपे स्वास्तिक लिखा हुआ है ।

लकड़ी की अलमारीया बनी हुई है उस में टी शर्ट जमी हुई है हांगीर में कुछ टी शर्टे टंगे हुई है ।

एक रोड दिखाई दे रही है उसके एक व्यक्ति पीछे हाथ बांधे खड़ा है एक जैकेट पहन कर जा रहा है सामने एक स्कार्पिओ दिखाई दे रही है।